और भगवान का मुंह जो है थोड़ा ब्लैक रंग का है और भगवान का जो मुकुट है वो भी काले रंग का है और उसके सामने कुछ आदमी है जो--

उतर रहे हैं सबसे इधर आदमी ने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी है।

और नीचे कुछ किताबें रखी हुई है। उनके साइड में कुछ बोटल्स रखी हुई है और ऊपर एक कैंपर भी रखा हुआ है उसके साइड में कुछ मिक्सिया भी रखी हुई है।

सामने कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं जो पानी में डुबकी लगा रहे हैं और उनके पीछे झरने पर से कुछ पानी गिर रहा है।

तालाब के साइड में कुछ बरफ दिखाई दे रही है और उसके जस्ट पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये पः फोटो --

एक फूल मे गुलाबी रंग के फूल लगे हुए है और नीचे जो पेड़ है वो हरे रंग का है।